और ये यहाँ पे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं सामने की तरफ बड़े और पीछे भी अन्दर--

इनमे टॉफी वगेरा रखी हुई हैं और कुरकुरा के पैकेट वगेरा यहाँ पे टंगे हुए हैं। और राजश्री वगेरे ये सारी चीजे और फोन पे का वो लगा हुआ है साइड में|

और ये देख सकते हैं बहुत सारी मशीने हैं। ऊपर लाइटिंग वगेरा है वाईट कलर में जोकि आपको जलती हुई दिखाई दे रही है।

होटल गायत्री का बोर्ड लगा हुवा है। साइड में आप देंखेंगे और इधर देखिए फ्लाइट एडीडास-- लिखा हुआ है यहां--

और ये देखिए इसके नीचे खंभा भी है और देख सकते है दोनों बिल्डिंग बड़ी-बड़ी बनी हुई है यहां पे।

देख सकते हैंयहाँ पे बच्चों के औरलड़कियों के कपड़े वगेरा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।